नमस्कार किकाड में इलैक्ट्रिक रूल चेक और नेटलिस्ट जैनरेशन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे कंपोनेंट्स यानी घटकों को वैल्यूज़ नियुक्त करना
इलैक्ट्रिक रूल चेक क्रियान्वित करना
और बनाये हुए स्किमैटिक के लिए नेटलिस्ट का निर्माण करना
इस ट्यूटोरियल के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबन्टु 1204 के साथ किकाड वर्जन 2011 हाइफन 05 हाइफन 25 उपयोग कर रहे हैं
इस ट्यूटोरियल के लिए पूर्व आवश्यकता इलैक्ट्रॉनिक सर्किट का मौलिक ज्ञान है
यूज़र को यह पता होना चाहिए कि किकाड में स्किमैटिक सर्किट को कैसे डिज़ाइन करें
सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया स्पोकेन हाइफन tutorialओआरजी पर जाएँ
किकाड शुरू करने के लिए उबन्टु डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने पर जाएँ
पहला आइकन जोकि डैश होम है उस पर क्लिक करें
सर्च टैब में किकाड लिखें और एंटर दबाएं
यह किकाड मेन विंडो खोलेगा
ईस्कीमा टैब पर क्लिक करें
एक इन्फो डायलॉग बॉक्स दिखता है जो कहता है कि यह स्किमैटिक नहीं ढूँढ सकता
ओक पर क्लिक करें
हम पहले बनाई हुई फाइल project1स्क प्रयोग करेंगे
फाइल मेन्यू पर जाएँ और ओपन पर क्लिक करें
वांछित डिरेक्टरी से project1स्क चुनें
अब हम घटकों को वैल्यूज़ नियुक्त करेंगे
अब हम र2 घटक को वैल्यू नियुक्त करते हैं
रजिस्टर यानी प्रतिरोध र2 से सम्बंधित र के ऊपर कर्सर रखें
राइट क्लिक करें और फील्ड वैल्यू चुनें
यह एडिट वैल्यू फील्ड विंडो खोलेगा
टाइप करें 1एम और ओक पर क्लिक करें
जैसे कि आप देख सकते हैं रज़िस्टर र2 को 1एम यानी 1 मेगा ओहम वैल्यू नियुक्त की गयी है
उसी प्रकार मैंने पहले ही अन्य घटकों को वैल्यूज़ नियुक्त कर दी हैं
अगली स्टेप इस सर्किट पर इलैक्ट्रिक रूल चेक क्रियान्वित करना है
ईस्कीमा विंडो के ऊपरी पैनल पर जाएँ
परफॉर्म इलेक्ट्रिक रूले चेक बटन पर क्लिक करें
यह ईस्कीमा ईआरसी विंडो खोलेगा
टेस्ट ईआरसी बटन पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि यहाँ दो एरर यानी त्रुटियाँ हैं
दोनों एरर्स बताती हैं कि टर्मिनल्स के पास पावर सोर्सेज़ यानी स्रोत्र नहीं हैं
क्लोज बटन पर क्लिक करें
स्किमैटिक में एरर नोड्स को एरोज़ से दिखाया जाता है
अब यहाँ एक पावर फ्लैग जोड़ते हैं
जिससे किकाड को पता चलेगा कि यहाँ हम एक पावर सप्लाई जोड़ने जा रहे हैं
इसके लिए दायें पैनल पर प्लेस आ पॉवर पोर्ट बटन पर क्लिक करें
अब कॉम्पोनेन्ट सलेक्शन विंडो को खोलने के लिए ईस्कीमा विंडो पर क्लिक कर्रें
लिस्ट अल्ल बटन पर क्लिक करें और आप पॉवर नोटेशन्स की सूची देख सकते हैं
PWR अंडरस्कोरFLAG चुनें और ओक पर क्लिक करें
हम वीसीसी टर्मिनल के पास पॉवर फ्लैग रखेंगे
इसको रखने के लिए ईस्कीमा पर क्लिक करें
हमें इस तरह के दो पॉवर फ्लैग्स की ज़रुरत है क्योंकि यहाँ इस प्रकार की दो एरर्स हैं
पॉवर फ्लैग पर कर्सर रखें और फिर इसको कॉपी करने के लिए सी दबाएं
इस पॉवर फ्लैग को ग्राउंड टर्मिनल के पास रखें
अब हम पॉवर फ्लैग को तारों से जोड़ेंगे
दायें पैनल पर जाएँ और प्लेस आ wireबटन पर क्लिक करें
अब पॉवर फ्लैग को वीसीसी टर्मिनल से जोड़ें
उसी प्रकार पॉवर फ्लैग को ग्राउंड टर्मिनल से जोड़ें
अब निश्चित करने के लिए हम एक बार फिर स्किमैटिक ईआरसी चेक रन करेंगे
इसके लिए ईस्कीमा विंडो के ऊपरी पैनल पर परफॉर्म इलेक्ट्रिक रूल्स चेक पर क्लिक करें
यह ईस्कीमा ईआरसी विंडो खोलेगा
टेस्ट ईआरसी बटन पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई एरर नहीं है
क्लोज पर क्लिक करें
अब देखते हैं कि नेटलिस्ट का निर्माण कैसे करते हैं
नेटलिस्ट घटकों की सूची और नोड्स जो उन्हें एक साथ जोड़ते हैं के बारे में जानकारी देता है
जैसे जैसे हम इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं हमें नेटलिस्ट का उपयोग पता चलेगा नेटलिस्ट का निर्माण करने के लिए ऊपरी पैनल पर जाएँ
नेटलिस्ट जनरेशन बटन पर क्लिक करें
यह नेटलिस्ट विंडो खोलेगा
इस विंडो में टैब्स हैं जो आपको भिन्न फॉर्मेट्स में नेटलिस्ट बनाने की अनुमति देती है
किकाड के लिए हम पीसीबीन्यू टैब उपयोग करेंगे
डिफॉल्ट फॉर्मेट विकल्प को टिक रहने दें और नेटलिस्ट बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि यह नेटलिस्ट फाइल को project1नेट नाम से सेव करता है
कृपया ध्यान दें कि जब एक नेटलिस्ट बनायी जाती है तो फाइल net एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है
सेव बटन पर क्लिक करें
अब मैं विंडो को रीसाइज़ करती हूँ
सेव बटन पर क्लिक करें
नेटलिस्ट फाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिज़ाइन के लिए आवश्यक सर्किट के घटकों के बारे में जानकारी देती है
हम इस नेटलिस्ट फाइल का उपयोग अन्य ट्यूटोरियल में देखेंगे
फाइल मेन्यू पर जाएँ और इस स्किमैटिक को सेव करने के लिए सेव व्होल स्कीमेटिक प्रोजेक्ट चुनें
फाइल मेन्यू पर जाएँ और ईस्कीमा विंडो को बंद करने के लिए क्विट चुनें
किकाड मेन विंडो में फाइल मेन्यू पर जाएँ और क्विट चुनें
यह किकाड मेन विंडो को बंद करेगा
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा घटकों को वैल्यूज़ नियुक्त करना सर्किट स्किमैटिक की गलतियों को जाँचना और संशोधित करना सर्किट के लिए नेटलिस्ट बनाना
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडिओ देखें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken tutorialorgnmeict इंट्रो पर उपलब्ध है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
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद